यहां पे प्लास्टिक के छोटे छोटे बैग और मिट्टी के गमलों में बहोत सारे रंग बिरंगे पौधे लगे हुए हैं।

जिसमें दरवाजे शीशे के हैं और दीवार भी कुछ हद तक शीशे की ही है।

इसके ऊपर में थोड़ा लाइट लगा हुआ है और अखाड़ा लिखा हुआ है।

साइड में बाउंड्री वॉल है जो लोहे की रेलिंग से बना हुआ है।

इनके पीछे की दिवाल पे दो मछली नुमा आकृति की मूर्ति रखी हुई है।

एक साइड खिड़की हैं जहां पे कांच लगी हुई हैं।

यहां पे कुछ कार खड़ी है एक वाइट कलर की एक ग्रे और एक ब्लैक ।

एक टेबल है जिसके चारों तरफ चार कुर्सियां रखी हुई है।

इस चित्र में बहुत सारे लोगों की भीड़ का दृश्य दिखाया गया है।

एक व्यक्ति ने अपने सिर पे गमछी बांध--

ये किसी हॉस्पिटल के केविन के बाहर का दृश्य है जहां पे दो लोग खड़े हैं।

एक ने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है और एक ने लाइट येलो कलर का शर्ट पहना है।

एक साइड में स्टील की कुर्सियां लगी हुई है।

ऑटो चली जा रही है और उसके पिछे एक ब्लू कलर की स्कूटी है स्कूटी पर दो व्यक्ति सवार है।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

पीछे की खिड़की पे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और एक गोंद की बोतल है।

बस स्टैंड का दृश्य है यहां पे जमीन पूरी भीगी हुई कीचड़ कीचड़ है।